वहां एक व्यक्ति है जो कि वाइट रंग का शर्ट पहन कर खड़ा है उसने बैग टांगा हुआ है।

यहाँ सीढ़ी से चढ़ कर कोई बस में जा रहा है बस के बाहर एक व्यक्ति है जो की लाल रंग का टी शर्ट पहना हुआ है।

ये फोटो में दो लोग जा रहे हैं एक व्यक्ति के पीछे लाल और काले रंग का बैग है।

यहां एक पानी का पौंड भी बना हुआ है जिसमें ब्लू रंग का टाइल्स लगा हुआ है।

हिरण का रंग गोल्डन और ब्राउन रंग का है।

यहां जाली लगा हुआ है और पीछे में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।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

अंदर पंखा लगा हुआ है और एक साइड में भी पंखा लगा हुआ है।

यहां पे ग्रे रंग का सोफा लगा हुआ है।

बीच में एक ब्लू रंग का टी शर्ट पहना हुआ है।

ताड़ पे बहुत सारे छोटे छोटे जार कुछ बड़े जार जिसमे ड्राई फ्रूट्स चैरी रखे हुए हैं।

यहां एक्वेरियम भी लखा हुआ है।

यहां कुछ खिलौने भी रखा हुआ है कुछ डब्बे में रखी हुई है।

यहां पे एक लाइन से बहुत सारे दुकान भी है।

आगे एक चक्का है और ऊपर लकड़ी बिछा हुआ है।

ये फोटो एक फर्नीचर शॉप के पास की है जहां पे पलंग बना हुआ है।

यहां पे बैलून लगा हुआ है।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

बीच में सर्कल बना हुआ है जिसमें एक फूल का बुके रखा हुआ है।

यहां पे एक पीले रंग का एक बाल्टी रखा हुआ है उसमें एक जग है।

जिसके आसपास कुछ लोग आना जाना कर रहे हैं।

आगे मिट्टी का इंटा बनाकर रखा हुआ है।

ये फोटो एक प्रज्ञा केंद्र के बाहर का है जोकि घर के अंदर बना हुआ है।